यहां पे एक शादी की रस्म हो रही है जिसमें ग्रुम और ब्राईड ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं।

टी शर्ट पहनी है वो शो किया गया है यहां पे वेदर भी शो करा गया है।

सिमरिया घर नाउ निधि आवे धाई यह लिख रखा है यहां मार्बल्स के--